फूलो को रखा गया है। भर भर कर और यहाँ पिले रंग की तथा ऑरेंज रंग की फूल दिख रही है जो के गेंदे का लग रहा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे घने घने जंगल दिख रहे है और बीच से एक रास्ता अंदर की ओर जाता हुआ दिख रहा है और इस जंगल के ठीक सामने एक बड़ा-सा लोहे का गेट लगा हुआ है जोकि आने-जाने का काम करता है।

यह एक सैलून की तस्वीर है जहां काफी खूबसूरत से डेकोरेशन किया गया है बलून की मदद से जो कि बलून का र- रंग नीला तथा सफे़द दिख रहा है।